इस रूम इस पिक्चर पे हमें एक अ पोस्टर दिखाया गया है जिसपे लिखा हुआ है बिग बाइट्स ।

एक रूम के अंदर पे है ऐसा प्रतीत हो रहा है।

इस पिक्चर पे हमें एक रेस्टोरेंट दिखाया गया है।

इस पिक्चर पे हमें एक रूम दिखाया गया है।

कुछ बच्चे चार्ट पेपर से कुछ बना रहे है और कुछ बच्चे कलर कर रहे है।

दीवाल के बीच पे एक गेट है जोकि खुला हुआ है।

काफी पेड़ पौधे भी है जैसे की पार्क में होते हैं राइट साइड पे ही काफी अच्छे बड़े बड़े पेड़ है।

जिसपे काफी लोग लाइन लगे हुए है पैसे निकालने के लिए।

और घर के आसपास काफी हरियाली है छोटे छोटे घास है और मौसम काफी सुहाना लग रहा है।

दोनों काफी खूबसूरत लग रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि जो लड़की के अह ऊपर एक ड्रोन है जो कि उन लोगों का फोटो ले रहा है।

और पेड़ के उस घर के पीछे पर कुछ पेड़ लगे हुए हैं।

उसके ऊपर एक बोर्ड लगाया हुआ है जिस पे लिखा हुआ है सेंट्रल बैंक आफ इंडिया पासीघाट।

यह एक अ ब्रांच और बैंक है ऐसा प्रतीत हो रहा है।

ऐसा लग रहा है कि इस यहां पर बारिश का मौसम है क्योंकि रास्ते पे पूरे पानी है।

और इस हाइवे पे काफी सारी गाड़ियां और बाइक आते जाते हुए दिख रहा है।

इस पिक्चर पे हमें एक पार्क दिखाया गया है।

अ और इस पार्क में एक व्यक्ति है वो वॉक कर रहा है।

एक व्यक्ति है और एक बार्बर पर है जो की एक व्यक्ति का बाल काट रहा है।

और एक टी_वी है जो कि कस्टमर लोगों के लिए लगाया गया है।

इस पिक्चर तर हमें एक रास्ता दिखाया गया है।

और आगे से काफी गाड़ियां आ रही है आ रहा है जैसे कि स्कॉर्पियो ।